जिसके ऊपर चिमनी लगा हुआ है उसके बगल में--

और बीचो बीच एक सफ़ेद रंग का छोटा सा घर बना हुआ है जिसके बगल में एक बाड़ी भी --

जिसके ऊपर ध्वज भी लगा हुआ है।

उसने गले में इयरफोन टांगा हुआ है उसके पीछे एक लड़की भी खड़ी हैं।

जिसमे बैंक ऑफ़ बरोदा हिन्दी और इंग्लिश दोनों से लिखा गया है |